इस इमेज में हमें समुद्र की फोटो दिखाई दे रही है आप देख सकते हैं ये समुद्र यहाँ पे यहाँ से कितना बड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पे दूर-दूर तक बड़ी-बड़ी चट्टानें भी दिख रही है।

और ई जो क्लेस क्लास रूम का कलर जो है वो वाईट कलर का है। यहा पे काफी सारी बेंचेस रखी हैं ब्लेक बोर्ड लगा है उसके ऊपर काफी सारे स्टिकर्स भी लगे हुए हैं। उसमे कुछ वर्ड्स से लिखा भी गया है।

इमेज में हमे गुलाब की फोटो दिखाई गई है यहां पे हमे इन्हें रोज भी कहते है।

ये सारे स्ट्रॉबेरीज रखी गई है स्ट्रॉबेरीज के साथ हमे यहां पत्तों के भी फोटो दिखाई दे रही है ग्रीन कलर के पत्ते है और ये स्टोर स्ट्रॉबेरीज का कलर रेड और येल्लो कलर मे दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे पोता गया है और ब्राउन कलर से इसकी जो लाइन्स बना रहे हैं ये लोग एक व्यक्ति है जो सीड़ी पे खड़ा है और दूसरा सीड़ी को पकड़ के --

और आप देख सकते है काफी बड़ा ग्राउन्ड बना है यहां पे अलग-अलग कलर की चटाई भी रखी है जैसे कि ऑरेंज ब्लू ब्लैक पिंक इस टाइप मे यहां चटाईया भी रखी गई है।

इस इमेज में हमें कारपेंटर्स की फोटो दी गयी है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी लोग हैं सब लकड़ी का काम कर रहें हैं।

एक प्लेटस है। प्लेटस के उपर केले का पत्ता रखा है। उसके उपर ढोसा रखा है और एक क-कटोरी है ग्रीन कलर की चटनी रखी गई है ये एक टेबल पे रखा गया है इसके पास दो ग्लास भी रखे गए है।

इस ग्राउंड के नीचे जो यहाँ रास्ता है उसमें व्हाइट कलर की आपको लकीर दिख रही है यहाँ पे दो ब-तीन बच्चे है जो यहाँ पे रेस लगा रहे है।

इस इमेज में हमें एक मिटाई की शॉप दिखाई दे रही है यहाँ पे अलग-अलग प्रकार की मिठाइयाँ रखी हैं।